जहां पर हमें बहुत सारी सीढ़ियां दिख रही है और सीढ़ियों के बगल में रेलिंग है।

और यहां पर रेलिंग हरे कलर की हमें दिखाई दे रही है सीढ़ियों में भी कुछ-कुछ हरे कलर का डिजाइन दिख रहा है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सुबह का वक्त है और ये किसी हॉस्पिटल का सीन नजर आ रहा है हमे।

जहां पर हमें एक बेड नजर आ रहा है इस बिस्तर में एक तकिया नजर आ रहा है।

और यहां पर बहुत लाइटिंग का काम किया हुआ है बहुत सारे आदमियों ने यहां लाल कलर के शर्ट्स और टी-शर्ट्स पहने हुए हैं।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये दिन का वक्त है और यहां पर एक लंबी सी पाइप बिछी हुई है और एक रेलिंग भी है।

अंदर मंदिर है पीछे हमें फैन भी हम देख सकते हैं और ये फैन अभी बंद है और यहां पर लाइटिंग का भी बहोत यूज है।

जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये रात का वक्त है और यहां पर ये किसी दुकान का फोटो बना हुआ है यहां पर पीछे हम झाड़ी और पेड़ देख सकते--

और अंदर में बोहत सारे समान रखे हुए हैं बैग्स टांगे हुए हैं बैग का कलर काला है और एक वॉल रखा हुआ है पीछे हम एक बाइक भी खड़ा देख सकते --

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह किसी ऑफिस के अंदर का नजारा है ऊपर में एक लाइट का काम किया हुआ है एक बॉस यहां पर बैठे हुए हैं।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये किसी अंदर में गाड़ी रखने के जगह का कोई मैकेनिक का दुकान है यहां पर तीन आदमी--